जिस पर रघुवंशि मोटर्स लिखा हुआ हैं।

जहां सजावट चल रही है। एक आदमी फूलों से सजावट कर रहा है।

रखे हुए है। यहां कुछ सत्संग चल रहा है और सामने--

यह एक ऑफिस का कमरा है। ऑफिस में एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक पहाड़ का दृश्य है। जहां से झरना बह रहा है। कुछ लोग झरने के नीचे खड़े--

पीछे एक सोफा है और सोफे पर कुछ फूल भी पड़े हुए है।